यह तार दिखाई दे रहे है घर बने हुए दिखाई दे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है असमान दिखाई दे रहा है उनका कलर नीला दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे हैं असमान दिखाई दे रहा असमान का कलर नीला दिखाई दे रहा है।

इतनी सब्जियों हरा बैंगनी नी पीला दिखाई दे रहा है |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

एक घर दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफ़ेद दिखाई रहा है प्लस का चिन्ह बना हुआ है दिखाई दे रहा है ऊपर तीन चड़ी दिखाई दे रही है कुछ परुष महिलाएं एवं बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे --